और जो कुछ बहुत सारी मशीनें भी जिम वाली रखी हुई हैं और इसमें ए_सी भी लगी हुई है।

और मंदिर के लिए सजावट की है और एक आदमी भी बैठा है जो कि कर रहा है।

आगे की तरफ एक पेड़ है जिसमें एको मोटी मोटी रसिया जैसी बंधी हुई हैं।

और आगे की बालकनी जैसी बनी हुई है।

और उधर एक भोपे भी दो लगे हुए हैं।

और उस तरफ एक डबल डोर का फ्रिज भी है जिसपे डिजाइन बहुत अच्छी बनी हुई है।

और कुछ अ कुछ छत पे खड़ी हुई हैं कुछ लोग और एक मकान भी बन्ना है जिनमें बहुत बाँस बल्ली लगी हुई है। एक --

इसमें कुछ सामान रखा हुआ है और खिड़ खिड़कियां भी खुली हुई हैं और चारों तरफ लाइट्स भी जल रही हैं।

पेट्रोल टंकी में नीले नीले कलर के खंभे लगे हुए हैं।

और कुछ महिलाएं बैठी हैं कुछ लोग टहल रहे हैं और बॉक्स जैसे रखे हुए हैं।

ऊपर बहुत मोटा मोटा अंग्रेजी के अक्षरों में भी लिखा है और नीचे--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

और दो पंखे भी लगे हुए हैं और एक घड़ी भी लगी हुई है।

और लाइट्स के लंब खंभे लगे उसमें लाइट्स सब जल रही है।

मे एक बॉडी बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ दुकानें खु बंद हैं और--

और खिड़कियां भी तीन दिखाई पड़ रही है तीन चार एक मोदी जी का बैनर भी लगा हुआ है।

इस दुकान में बहुत सारी चप्पलें रखी हुई हैं।

इसमें दो डस्टबिन भी रखे हुए हैं और ऊपर भी एक बैनर लगा हुआ है औ--

पे और एक सफेद सफेद इसपे लिखा भी बड़े हेडलाइन मोटा मोटा लिखा हुआ है।

और पीछे की तरफ जो दीवाल है वो सफेद कलर की दिखाई पड़ रही है।

अंदर एक वॉचमैन भी खड़ा हुआ है और एक ऑटो भी जा रहा है स्कूटी भी निकल रही है।

और इसमें एक हसबैंड और वाइफ की भी लगी हुई है जो दुल्हा की फोटो ब्लर हो चुकी है और लाइट्स भी जल रही है।